c ++ में classes और objects के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
classes
objects encapsulation और
data abstraction
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu os version 1110
g ++ compiler version 461
अब classes के परिचय के साथ शुरू करते हैं
class एक keyword class प्रयोग करके बना है
इसमें data और functions होते हैं
class code और data को links करता है
class के data और functions class के members कहलाते हैं
अब objects पर जाते हैं
objects variables हैं
ये एक class की copy हैं
उनमे से प्रत्येक properties और behaviour रखता हैं
properties data एलीमेन्ट्स से परिभाषित होती हैं और
behavior methods नामक member functions से परिभाषित होता है
अब class के लिए रचनाक्रम देखते हैं
यहाँ class एक कीवर्ड है जो class को परिभाषित करने में प्रयोग होता है
classname class का name है
public private और protected access specifier हैं
और यहाँ हमने वो data members और वो member functions जैसे public प्राइवेट और protected परिभाषित किये हैं
हम class को इस प्रकार बंद करते हैं
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने editor पर code पहले टाइप कर लिया है
मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें हमारा filename class hyphen obj dot cpp है
इस उदाहरण में हम class प्रयोग करके वर्ग के area की गणना करेंगे
मैं अभी code समझाती हूँ
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हम std namespace प्रयोग कर रहे हैं
यह square named class के लिए घोषणा है
यहाँ मैंने कोई access specifier घोषित नहीं किया है
अतः default रूप से यह प्राइवेट है
इसलिए variable x class square का प्राइवेट member है
यह public specifier है
function area public function है
और इस प्रकार हम class and करते हैं
अब access specifiers के बारे में अधिक जानने के लिए अपनी slides पर वापस आते हैं
public specifier
public specifier data को class के बाहर accessed करने की अनुमति data है
एक public member program में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है
private specifier
private की तरह घोषित members class के बाहर प्रयोग या accessed नहीं किये जा सकते हैं
private members केवल class के members के द्वारा उपयोग किये जा सकते हैं
protected specifier
protected members class के बाहर से accessed नहीं किये जा सकते हैं
ये derived class से accessed किये जा सकते हैं
अब अपने program पर वापस आते हैं
यहाँ इस statement में हमारे पास class नेम है
scope resolution operator और function name
हमे यह operator प्रयोग करना ज़रूरी है
यह स्पष्ट करता है कि function area global function नहीं है
यह class square का एक member function है
यहाँ हमने int a आर्ग्यूमेंट passed किया है
अब scope resolution operator के बारे में अधिक जानने के लिए slides पर वापस आते हैं
यह छुपे हुए data को access करने में प्रयोग होता है
function या variable को उसी name के साथ access करने के लिए हम scope resolution operator :: का प्रयोग करते हैं
माना कि local variable और global variable के name समान हैं
वरीयता local variable को मिलती है
हम :: scope resolution operator प्रयोग करके global variable access कर सकते हैं
अब अपना program खोलें
यहाँ a की value x में संचित होती है
फिर हम square का area return करते हैं
यहाँ x एक private member है
प्राइवेट पैरामीटर्स access करने के लिए हमने public member a प्रयोग किया
private members हमेशा छुपे रहते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ sqr class square का object है
इस प्रकार हम एक object बनाते हैं
classname के आगे objectname
यहाँ हम object sqr और एक dot operator प्रयोग करके function area को कॉल करते हैं
फिर हम argument को 4 देते हैं
हम x की value को 4 set करते हैं
यह हमारा return statement है
अब save पर क्लिक करें
अब program को निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए type करें g ++ space class hyphen obj dot cpp space hyphen o space class
enter दबाएं
type करें /class dot slash class
enter दबाएं output प्रदर्शित होता है:
area of the square is 16
अब अपने program पर वापस आते हैं
अभी तक हमने देखा
data और functions class में एक साथ संयुक्त होते हैं
class single unit है
जिसमे उनका प्रयोग करके data और function को grouped किया data है
यह mechanism encapsulation कहलाता है
फिर हमने private और public members के साथ class देखा है
private data छुपा हुआ है
इसको class के बाहर accessed नहीं किया जा सकता
यह mechanism data abstraction कहलाता है
interface दिखता है पर कार्यान्वयन छिपा रहता है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
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
encapsulation data abstraction
private members
int x;
public functions int area int;
classes classes square
object बनाना
square sqr
object sqr dot area प्रयोग करके एक function कॉल करना
एक नियत कार्य में एक program लिखकर दिए हुए circle का perimeter perimeter ज्ञात करें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
online test pass करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contact @spokentutorial org को लिखें